पीछे की ओर बहुत सारी लाइटें और टेंट भी लगे हुए हैं।

एक व्यक्ति साइकल लेकर जाता हुआ दिखाई दे रहा है।

कुछ नाव भी दिखाई दे रही है।

पीछे की ओर कुछ परदे भी लगे हुए हैं।

यह एक मैरिज होम है।

टेंट भी लगा हुआ है।

इस चित्र में हमें कुछ बैनर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

उनके ऊपर कुछ गाड़ियां के फोटो लगे हुए हैं।

और भी बहुत सारा सामान रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

कुछ मेज और कुर्सियां भी रखी हुई हैं।

कुछ लोहे का जाल भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

लोहे का खंबा भी लगा हुआ है।

कुछ पोस्टर भी लगे हुए हैं।

की बैनर भी लगे हुए हैं।

भी दिखाई दे रहा है।

दो लड़कियां साड़ी और लहंगा पहने खड़ी हुई है।

और बहुत सारी औरतें भी खड़ी हुई हैं।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

और कुछ मकान भी बने हुए हैं।

उसने अपने हाथ में घड़ी पहनी हुई है।

कुछ दीवारें खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं।

एक व्यक्ति भी खड़ा हुआ है।

पीछे की ओर कुछ मकान भी दिखाई दे रहे हैं।

कुछ बर्तन भी रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

लकड़ी की अलमारी भी दिखाई दे रही है।

कुछ व्यक्ति भी खड़े हुए हैं।

जो डिजाइन निकाला हुआ है।

इस चित्र में एक जिम दिखाई दे रही है।

कुछ खड़ी हुई है और कुछ बैठी हुई है पीछे की ओर नीले रंग का पर्दा लगा हुआ है।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

इस चित्र में कई मंदिल दिखाई दे रही है।